यहाँ ये लोग प्रैक्टिस कर रहे है जो इनका पैर--

स्क्रेच हो गया है तो इनको ठीक करने के लिए एक डाक्टर आये हुए है जो इनका पैर को ठीक कर रहे है स्क्रेच को--

यहाँ एक चर्च है जहाँ क्रिस्चियन लोग आये हुए है इस चर्च में काफी जादा भीड़ है क्रिस्चियन लोगो का--

यहाँ एक दवाई दुकान है जहाँ कई प्रकार की दवाईयाँ बेची जाती है इस दुकान पे --

बड़ा दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो पक्षी जो पानी पे है।

जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में गेट --

और अपने कार को करने के लिए आते है स्कुटी और की तरह की बाइके यहाँ हैं।

जो काफी अच्छे लग रहे है देखने में काफी सुंदर बनाया गया है ये खेत--

जो काफी अच्छी बनाई गयी है जहाज--

काफी अच्छे बनाए गए हैं ये भोलेनाथ का मंदिर--

ये देखने में काफी सुंदर और काफी अच्छे लग रहे है।